नमस्कार स्प्रैडशीट्स की मूल बातों पर जियोजेब्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यदि आप इस समय पहली बार जियोजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर इंट्रोडक्शन टो जियोजेब्रा ट्यूटोरियल देखें
जियोजेब्रा के साथ शुरूआत के लिए मैं जीएनयूलिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उबंटू वर्जन 1004 एलटीएस और जियोजेब्रा वर्जन 32400 का उपयोग कर रहा हूँ
इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य है कि जियोजेब्रा में स्प्रैडशीट का उपयोग कैसे करें
इस ट्यूटोरियल में हम स्प्रैडशीट का उपयोग मूल डेटा प्रस्तुतीकरण और गणना कैल्क्युलैशन्स करने के लिए करेंगे
और आयतचित्रहिस्टोग्राम बनाने के लिए डेटा का उपयोग करें
हम यह भी देखेंगे कि आवर्तक जियोजेब्रा आकृतियों को बनाने के लिए स्प्रैडशीट व्यू का उपयोग कैसे कर सकते हैं जैसे समानांतर रेखाओं का सेट बनाना
पहले हम 50 अंकों के टेस्ट में 50 विद्यार्थियों के अंकों का उपयोग करेंगे
यहाँ फ्रॉम और टो क्लास बाउंडरीज तथा फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है
मैं फ्रीक्वेंसी को क्लीपबोर्ड पर कॉपी करने जा रहा हूँ
अब जियोजेब्रा विंडो पर
पहला स्टेप है स्प्रैडशीट व्यू को स्पष्ट करना
मेन्यू आइटम व्यू चुनें फिर स्प्रेडशीट व्यू चुनें
स्प्रैडशीट व्यू को यहाँ लायें
पहला कॉलम आ फ्रॉम वर्ग सीमा कॉलम ब टो और कॉलम सी फ्रीक्वेंसी दर्शाता है
अब मैंने फ्रीक्वेंसी कॉपी कर दी है मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ
अब फ्रॉम और टो वेल्यूस के लिए
मैं इन्हें पेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आपको जियोजेब्रा स्प्रैडशीट्स की अन्य विशेषता बताऊँगा
पहले मैं शुरू करूँगा 0 फिर 5 5 और 10 अब यदि मैं यहाँ दो सेल्स चुनता हूँ और फिर इस ब्लू स्क्वेरको नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ ध्यान दें कि एक अंकगणितीय अनुक्रम बनता है
उसी तरह मैं यह टो वेल्यू के लिए कर सकता हूँ
क्लास बाउंडरी लिस्ट और फ्रीक्वेंसी लिस्ट तैयार करें
यह करने के लिए यहाँ कॉलम्स ब चुनें
राइट क्लिक करें और क्रिएट लिस्ट चुनें
यहाँ ल1 पर ध्यान दें जिसका अर्थ है L 1 बन गया है
हमने राइट क्लिक करके और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज चुन कर अभी इसे संसोधित किया है
सुनिश्चित करें कि पहली वेल्यू जीरो यहाँ दिख रही है
और क्लोज दबायें
अब फ्रीक्वेंसी लिस्ट के लिए समान कार्य करें
फ्रीक्वेंसी को चुनें राइट क्लिक करेंऔर क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करें
मुझे L 2 मिला
अब आयतचित्र बनाने के लिए यहाँ इनपुट बार पर जाएँ
आप यहाँ कमांड्स से चुन सकते हैं या आप केवल हिस्टोग्राम टाइप कर सकते हैं
अब यहाँ दायीं ओर वर्गाकार कोष्ठकों के मध्ययदि आप एंटर दबाते हैं यह आपको भिन्न ऑप्शन्स बताता है
इसमें से एक ऑप्शन लिस्ट ओएफ क्लास बाउंडरीज और लिस्ट ओएफ राव दाता है चलिए इसका उपयोग करें
मैं लिखूँगा L 1 जियोजेब्रा स्किल सेंसिटिव और क्लास बाउंडरीज के लिए तथा L 2 फ्रीक्वेंसीज के लिए और एंटर दबाऊँगा
ध्यान दें कि आयतचित्र यहाँ बन गया है
अब आयतचित्र को अधिक प्रत्यक्ष और पठनीय बनाने के लिए मैं मूव ड्राइंग पद का उपयोग करूँगा
और फिर मैं यहाँ ड्राइंग पद प्रॉपर्टीज पर राइट क्लिक करूँगा और इस दूरी को 5 में बदलूँगा जोकि प्रत्येक बार की चौड़ाई है
तथा क्लोज पर क्लिक करें
फिर मैं जूम आउट कर सकता हूँ
और फिर से ड्राइंग पद को स्थानांतरित करें
ध्यान दें कि जब मैं आयतचित्र बनाता हूँ यह इस वेल्यू को बनाता है a250 आ प्रत्येक बार की लम्बाई ओर चौड़ाई के परिणाम का योग है
मैं इस आ वेल्यू को यहाँ ऊपर ले जा सकता हूँ
अगला चरण है य अक्ष पर समानांतर रेखाओं का सेट बनाने के लिए स्प्रैडशीट ब्यू में बिंदु और रेखा तैयार करना
मैं एक नया जियोजेब्रा विंडो खोलूँगा
अब जियोजेब्रा से कोई भी कमांड यहाँ सेल में टाइप की जा सकती है
पहले बिंदु बनाने के लिए आपको इस तरह केवल एक बिंदु देना होगा
यहाँ दिखाई देने वाले आ1 नामक बिंदु पर ध्यान दें जो 12 निर्देशांक के साथ सेल एड्रेस कॉलम आ रो 1 है

उसी तरह मैं यहाँ 22 टाइप करता हूँ और एंटर दबाता हूँ मुझे आ2 प्राप्त होता है
अब यदि मैं इन दो सेल्स को चुनता हूँ और फिर ब्लू स्क्वेर को नीचे ड्रैग करता हूँ
इसे यहाँ लाता हूँ
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अल्जेब्रा व्यू बंद कर दूँगा
ध्यान दें कि मुझे यहाँ 10 बिंदु प्राप्त हुए
और उसी तरह मैं कॉलम ब में करूँगा
बिंदु के रूप में 14 रखूँगा मुझे यह बिंदु यहाँ मिलता है मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ और शो लाबेल लिखूँगा यह सेल एड्रेस ब1 दिखाता है
मैं टाइप कर सकता हूँ
24 और मुझे ब 2 मिलता है
मैं इसे फिर से ड्रैग करता हूँ और मुझे यहाँ 10 बिंदु मिलते हैं
अब तीसरे कॉलम में यदि मैं रेखाखंड बनाना चाहता हूँ
मैं जियोजेब्रा कमांड सेग्मेंट का उपयोग कर सकता हूँ और वेल्यू में मैं सेल एड्रेस आ1 दे सकता हूँ
मैं इसे यहाँ लाता हूँ
B1 और एंटर दबाता हूँ
यह रेखा की लम्बाई है जो कि आ1 और ब1 के मध्य है
अब मैं केवल इस सेल को चुनता हूँ और इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ मुझे 10 समानांतर रेखाओं का सेट मिलता है
एक और बात ध्यान रखने की है कि यदि आप आप्शंस और फिर अल्जेब्रा पर जाते हैं
अभी यह वैल्यू पर है अतः आप कॉलम सी में रेखा की लम्बाई देखते हैं
मैं इसे कमांड में बदल सकता हूँ और यह मुझे कमांड दिखाएगा
अब नियत कार्य
पहले नियत कार्य में निम्न डेटा का उपयोग करके किसी एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की घर से स्कूल की दूरी का एक आयतचित्र बनायें
मेरे पास यहाँ क्लास बाउंडरीज वर्ग सीमाएँ और फ्रीक्वेंसीज फ्रिक्वेंसिस हैं
डेटा को प्रस्तुत करने के लिए स्प्रैडशीट ब्यू का उपयोग करें क्लास बाउंडरी वर्ग सीमा और फ्रीक्वेंसी लिस्ट्स फ्रिक्वेंसी लिस्ट्स बनायें
लिस्ट्स के साथ आयतचित्र बनाने के लिए इनपुट बार का उपयोग करें
फ्रिक्वेंसी बदलें और आयतचित्र में बदलाव का निरीक्षण करें
मैंने यह ट्यूटोरियल यहाँ पहले ही बनाया हुआ है
ध्यान दें यहाँ आयतचित्र पर
अब अगला नियत कार्य
दूसरे नियत कार्य में हम स्प्रैडशीट व्यू का उपयोग करके संकेन्द्री वृत्त बनायेंगे
वृत्त के केंद्र को चिन्हित करने के लिए ड्राइंग पैड पर बिंदु आ खींचें त्रिज्या के कॉलम आ को बनाने के लिए स्प्रैडशीट का उपयोग करें
केंद्र आ के साथ वृत्त और कॉलम आ से त्रिज्या बनाने के लिए स्प्रैडशीट के कॉलम ब का उपयोग करें
केंद्र बिंदु आ को स्थानांतरित करें और निरीक्षण करें
मैंने यहाँ नियत कार्य तैयार किया है
केंद्र बिंदु को स्थानांतरित करें
और वृत्तों का निरीक्षण करें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
आप इसके बारे में अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद